मेरे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग में बहोत सारे दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर फ्लैट में बहुत सारी ग्रिल भी नजर आ रही है यहां पर बहुत सारी खिड़कियां भी नजर आ रही खिड़कियों में बहुत सारे शीशे भी नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहुत सारी ग्रिल भी दिखाई दे रही है।

कुछ जनरेटर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग येलो कलर की दिखाई दे रही है बिल्डिंग में बहुत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पर ग्रिल भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर छत का कलर येलो कलर का दिखाई दे रहा है।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

यहां पर कुछ आदमी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक जिम दिखाई दे रही हैं यहां पर बहुत सारी मशीनें भी--

बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे--

यहाँ पर बहोत सारे यो कर लोग योगा करते हुए भीं दिखाई दे रहें हैं इन्होंने अपने नीचे कारपेट भीं बिछा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

एक इमरजेंसी दिखाई दे रही है यहां पर पंडित भगवत दयाल शर्मा पी_जी_आई_एम_एस रोहतक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर बिल्डिंग योगा मंदिर दिखाई दे रहा है।

व्हाईट कलर का दिखाई दे रहा हैं यहां पर कुछ बिल्डिंग रेड कलर की भी दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने एक शॉप नजर आ रही है यहां पर कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए गए हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ मटके भी दिखाई दे रहे हैं।

वेटर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ लोग बैठ--

मेरे सामने एक मैरिज पार्टी नजर आ रही--

दे रहा है और यहां पर पर्दो का कलर रेड कलर का भी दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारी लेडिस और जेंट्स --

सारे दरवाजे में नजर आ रहे हैं यहां पर एक कारपेट भी नजर आ रहा--

यहां पर बहुत सारी लाइटें भी दिखाई दे रही--

यहां पर एक गार्ड भी खडा हुआ--